ये देखने से ऑफिस लग रहा है नीचे टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर खड़े हुए है टू-व्हीलर के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है।

वह अपार्टमेंट के बगल में हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे है अपार्टमेंट खाली दिख रहा है।

यहाँ देखने से वीटू लग रहा है यहाँ पर जेकेट रखी हुई हैं।

ये किसी कम्युनिटी के धर्म क सीन लग रहा है जहाँ पे सभी लोग अपना अं --

जिस जिसका कलर सफ़ेद और काले रंग का है। गाय फंदे से बंधी हुई है गाय के नीचे गोबर और सामने भूसा लग रहा है।